बालकनी में एक कर्कट का दीवार है जिस पर --

और एक आदमी खड़ा है जो की पोस कुछ पोस्टर लगा हुआ है उसे देख रहा है |

पीले रंग की कुर्ती में बैठी हुई है। एक औरत लाल कलर की साड़ी पहन कर खड़ी है। जिसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है और --

सूरज की किरणे पड़ रही हैं उसपे जिसके वजय से उसका कलर जो है वो पीले रंग का भी नजर आ रहा है।

सामने में एक बच्चा है जोकि पीले रंग की टी -शर्ट पेहनी हुई है और ब्लैक कलर की पैंट है और उसके सामने उससे छोटा सा बच्चा है जोकि --

या सोडा एण्ड कॉफी शॉप की दुकान का फोटो है। जिसका नाम डी.एस.पी है।

लाइटे से सजाई गई हैं। बाल्स लगे हैं। बेल भी लगे हैं। पीछे एक आदमी है जिसके गोद में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक सैलोन का फोटो है। जिसमे एक आदमी खड़ा है और कैमरे की तरफ देख रहा है। उसने लाल बैग ली हुई है।

यहाँ एक बिल्डिंग का फ़ोटो है जिसमें स्टेट बैंक ए.टी.एम. है |

साड़ियाँ पहन कर बैठी हुई हैं और कुछ खड़ी हैं।

यह एक मिठाई के दुकान की फ़ोटो है जिसका नाम बगडेड स्वीट्स है क्योंकि घंटाघर --

हॉल को देख रहे हैं और सामने कोई भी मूवी नहीं चल रहा है | उजले कलर का स्क्रीन है |